इस फोटो के अंदर एक पार्क नजर आ रहा है जहां पर बीच में एक गोलाकार --

पेड़ नजर आ रहे हैं वह सभी पेड़ हरे भरे हैं।

एक फेडरल बैंक नजर आ रहा है इस फेडरल बैंक --

जिसमें से एक हरी रंग की और एक ही पीली रंग की है।

जिसको सफेद और क्रीम रंग से रंगा गया है।

दो तीन लोग सब्जी खरीदते हुए भी नजर आ रहे है।

और इसके आसपास बहुत सारी हरी झाड़ियां भी नजर आ रही है।

इस पार्क के अंदर बहुत ही डिजाइन दार पेड़ भी लगाए गए हैं।